और यहां पर गाड़ियों के पार्किंग का भी प्रावधान है। यहां पर गाड़ियां लगी हुई है।

पर यहां पर कभी कोई आया नहीं है एक सामने मुझे वेटर दिख रहा है वेटर जहां काउंटर पे होता है।

और बैठने का यहां पर बहोत ही अच्छा स्टैंडर्ड है खिड़की के साथ भी लगे है।

अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं कुछ डांस --

बालकनी क्लीनिंग है और परदे लगे हैं खिड़की में पीछे भी लगे हैं पर्दे बहोत ही अच्छे से जो है प्रबंध किया गया है इसका।

अह होटल दिख रहा है ये जो एक हो टोटल रेस्टोरेंट है।

और इसके सामने गेट के सामने जो है--

और बहोत सारे गमले मुझे दिख रहे हैं फूल के।

डायमंड्स जड़े हुए है बहोत सारे छोटे से लेकर बड़े तक--

मूर्ति बनाई गई है बोहोत ही अच्छी--

जहां पर मुझे दिख रहे हैं पेन रखे गए हैं टेप है मार्कर्स है और बहोत सारा समान है रखा गया।

इस फोटो में मुझे सामने एक स्टेशनरी की शॉप दिख रही हैं।

यहां पर लैपटॉप है एक मशीन है और सामने बहुत कुछ मशीन है और पेशेंट को लेटने के लिए बेड हैं।

जहां से तीन साइड से हम जा सकते हैं।

स्कूल या स्कूल है कोई ये या कॉलेज है और--

लाइटिंग बहोत अच्छी की गई है इस होटल में बाहर से भी है अंदर से भी है।

कोई एक फूल की दुकान है हारे बना गयी है फूल की गुलदस्ते बनाये गये हैं कुछ ऐसे रखे गये हैं।

और इस इसके किनारे से गाड़ियां लगी हुई है।

और यहां पर एक बहोत बड़े पेड़ लगे हैं यहां पर।